और यह एक कपड़ा का दुकान है इसमें कपड़ा बिक रहा है कुछ ग्राहक हैं।

और उसके बगल में ओभर ब्रिज रोड है रोड के नीचे एक बाइक वाले जा रहे हैं।

खड़ा है उसके बगल में एक बाइक है उसके पीछे ठंडा वाला एक--

बहुत सारे हरियाली पेड़ है दो गाड़ी लगे हुए हैं।

चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ एक नदी है नदी के तट पर एक काला सा मगरमक --

एक बहोत सुंदर होटल है और लग रहा है होटल का ओपनिंग आज ही हुआ है।

और इसमें पानी वाले पीछे पानी गर्म करने और ठंडा करने वाले मशीन भी दिख रहे हैं बिक रहे हैं।

मुंह करके बैठा हुआ है जिसमें एक खड़े हैं व्यक्ति।

एक बहुत से सुंदर पहाड़ी इलाकों पे बना हुआ--

जो कि बीच में किसी प्रकार का फूल रखा हुआ है उसको लोग देख रहा है बहुत सारे लेडीज लोग देख रहा है एक बगल में जेन--

मझौलिया नोट हमारे यहां सही प्रकार के एक्सरे होते हैं।

और शीशा की बिल्डिंग में दो मंजिल पर शीशा का अं गेट लगा हुआ है।

ये दो ग्राहक खड़े हुए हैं सामान लेने के लिए जिसमें बहुत सारे--